यह गेराज बहुत ही बड़ा है और अच्छा है ये समान--

पार्क है और बहुत ही अच्छी तरह से सजावाट है।

यहाँ पर छत की ढलाई हो रही है यहाँ पर बहुत सारे--

यह एक मोर पंछी है जो बहुत ही खूबसूरत है।

इस इसको अभी तक हमने देखा नही है लेकिन बोहत ही जल्द देखेंगे।

चारों कुर्सी लगे हुए हैं यहाँ पर बैठते है और खाना खाते हैं।

यह एक गगैरेज है जो कि कारो की सफाई यहाँ पर एक बजुर्ग आदमी कर रहे हैं।

यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं।

और बहुत ही बड़े-बड़े बंदा गोभी यहाँ पर है।

किसानों ने बहुत ही मेहनत किया है यहाँ पर--

और बहोत ही कम दामो में--

मिठाई चना का भूंजा हुआ चना है और बहुत सारे ये मिलते हैं।